और बीच में एक तीन ताड़ जाते हुए दिख रहे हैं।

दूर की तरफ एक टंकी भी दिख रही है ऊपर बादल साफ दिख रहा है।

प्रेम नारायण शाह नंबर भी लिखा हुआ है निन्यानबे अठारह अठारह चौवालीस सत्तर।

नीचे की तरफ एक क्रेन दिख रही है और सामने एक फैक्ट्री या कंपनी और इधर ऊपर एक कमल दिख रहा है सामने--

यह किसी मेला मैदान का सीन है जिसमें दो तीन ऑटो घूम रहे हैं और दो लड़के मोबाइल हाथ में लिए गेम खेल रहे हैं।

यहां भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ है।

काउंटर के पास एक कुर्सी है और एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है कि--

फैंसी लहंगा एवं ज्वेलरी सेट किराए पर मिलते हैं।

यह एक होटल का सीन है जिसमे सामने की तरफ खिड़की के अंदर एक ए_सी लगी हुई है।

यह एक मुर्गी फार्म है जिसमें बहोत सारी मुर्गियां दिख रही हैं।

पर अंदर की तरफ तीन चार सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं।

एक प्लाट खाली पड़ा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है।

एक तरफ बहोत सारी मिर्ची लगी हुई हैं। एक तरफ बीनने में लगा पडा है।

जोकि पीछे वाइट चादर पर लगे हुए हैं।

इंग्लिश में लिखा है गोपालगंज ब्रांच ।

यह एक दर्शित की दुकान है लेडिस गारमेंट्स की।

इसमें एक क्रेन से ऊपर पीलर ले जाया जा रहा है जो की जालीदार पिलर है।

आप एक मंदिर में छं सात घंटे टंगे हुए हैं।

और पास में ही एक आदमी और एक आदमी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं।